इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रदर्शन दिखाए गए हैं येलो फुल है जिसमें यह लोग गुलाबी रंग बिरंगी फूलों की है जिसमें ग्राहक फू --

और पीछे ऑपरेटर तीन ऑपरेटिंग ऑपरेटर है ऑपरेटिंग कर रिया है नीचे डांस फ्लोर टाइप में दिख --

ये चित्र किसी स्कूल्स का है जो एक बहुत ही उच्च स्कूल है।

मेरे सामने इस तस्वीर में जैसे ही हमें दिखाई दे रहा है कहीं चाभियां पड़ी हुई है एक भैया सरपंच --

दिखाई दे रहे है जैसे की एक आदमी बच्चा औरत और पीछे कुछ मंदिर के संरचना जैसे कुछ हमे दिख रहा --

पीछे की ओर देखे तो हम पेड़ पौधे कई महिलाएं भी खड़ी है और यह मंदिर जैसे कि हमें ईंटो पर पिलर पे पिलर पिलर पे पिलर ऐसे कुछ रखा हुआ है।